ये आदमी ठीक कर रहा है उसने एक हाथ मे फटा हुआ गत्ता पकड़ा हुआ है।

एक स्टूल नज़र आ रहा है और एक टेबल भी दिखा--

यहां पे मुझे बहोत सारे झोले नजर आ रहे हैं।

दोनों बिल्डिंग मुझे चार चार मंजिल की दिखाई दे रही है।

पार्क के चारों तरफ मुझे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

हॉस्पिटल के दरवाजे मुझे शीशे के दिखाई दे रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर एक बोर्ड लिखा है न्यू चंडीगढ़ हॉस्पिटल ।

इस तस्वीर में मुझे एक मैरून कलर की बिल्डिंग नजर आ रही--

बिल्डिंग के साथ कुछ गमले रखे हैं जिनमें पौधे लगाए गए हैं।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

यहां पे मुझे एक रेड कारपेट भी नजर आ रही है।

नजर आ रहे हैं चारो तरफ हरियाली है यहां पे मुझे काटेदार एक--

अंडे की ट्रे नजर आ रही है यहां पे मुझे कुरकुरे और चिप्स के पैकेट भी नजर आ रहे--

दीवार पे मुझे घड़ी और कुछ फोटो फ्रेम भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।